और बगल मे फिर दिवाल हे.

ढेर सारा फुला-फुलाना दिखाई दे रहा हे एक केक दिखाई दे रहा हे टेबल दिखाई दे रहा हे लाइट जलता हुआ दिखाई दे रहा हे.

एक आदमिन मछली देख रहा हेएक आदमिन उधर एक औरत उधर बैठी हुई हे.

एक आदमीन बोरा हाथ लिया है बोरा और एक आदमीन झंडा लिया है इधर--

उधर से एक आदमीन आ रहा हे अं अ दो आदमिन बैठे हुई हे एक गाडी लगा हुआ हे.

कुर्सियां ढापा हुआ पर्दे से नीचे मैट बिछा हुआ लाल उधर बहुत सारा फूल लगाया हुआ है।

यह किराना दूकान हे किराना दूकान मे बोहोत सारे चॉकलेट रखा हुआ हे.

डिबा रक-रैक पे रखा हुआ है एक घड़ी है घड़ी चल रहा है.

तार ऊपर से खींचा हुआ है उधर पोल दिख रहा है उधर एक बिल्डिंग है उसमे प्लास्टर किया नहीं है.

रेक पर रखा हुआ है जैसे मैं बिस्कुट हॉर्लिक्स टेबल पर एक दर्जी रखा हुआ है। फुल रखा हुआ है।

बोहोत सारे फुटबोल है एक कुर्सी है एक फूल है।

बजार है बजार में दुकान है जैसे पशुओं का दुकान हैं. और

इधर फल का भंडार है बहुत अच्छा दिख रहा है लिम्बु है अनार है सेव है केला है.

नींबू हरा कलर का है अनार लाल कलर का है केला पीला कलर का है बहुत अच्छा दिख रहा --

पीला नीला पीला पहने हुए कपड़ा उधर एक ताजमहललियन उठा हुआ हुआ है.

यहां स्टेशन में कुछ लिखा हुआ है एक आदमी बैग लेके ठेरा है बहुत आदमी लेके बैग ठेरा है.

यहाँ पर एक टेक्टर का सैकेंड हैंड का शोरूम हे जहा पर टेक्टर चार लगे हुए हे.

ये गाय है गाय बच्चा देने वाली है।

लाल लाइट है पंखा है सीलिंग पंखा है बोर्ड है चार्ज है बहुत अच्छा दिख रहा है.

पंखा बहुत है लाइट बहुत है शीशा का दरवाजा है और बहुत महंगा-महंगा बाइक है टायर है।

बुखार का दवा है बोहोत सारा दवा है.

शीशा और लेट्रिंन का दरवाज़ा रखा हुआ है इधर कुर्सी रखा हुआ है एक टेबल रखा हुआ है.

और टेबल है और काउंटर है और एक बोतल है।

और लोहे का पाइप है और सीटा है ऊपर के साइड में पोस्टर है.

इधर बहुत सारा बिल्डिंग है एक पेड़ है।

इधर एक लाइट गोले में घूम रहा है उधर एक बिल्डिंग है.

और बेल्ट भी हे टोपी भी हे बेग लटका हुआ हुआ हे एक साइकिल का चक्का दिख रहा हे.

इधर एक पोस्टर टंगा हुआ है बहुत अच्छा दिख रहा है.

एक ग्राउंड है ग्राउंड में बहोत सारे आदमी जुटे हुए है मैच हो रहा है यहाँ पर.

आरी आरी घास है खेत है खेत कोड़ा हुआ है उधर बिल्डिंग है एक झंडा फहर रहा है।